ये एक कैफे का इमेज है जिसका नाम कौफिया ब्लू ऑन द रॉक्स है।

और इधर सामने मिरर लगा हुआ है।

सामने शटर लगा हुआ है कांच लगा हुआ है।

ऊपर भी चेयर्स लगी हैं डेकोरेशन है अच्छा टेंट वगैरह लगा हुआ है।

और नदी का व्यू है जिसमें पानी है और बहोत ही सुन्दर व्यू है।

साइड में गार्डन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं बीच बीच में।

एक नदी के साइड का इमेज दिख रहा है मुझे नदी में पानी बेह रहा है।

तो बहोत सारे लोग खाना बना रहे कुछ लोग खड़े होके देख रहे--

इस इमेज में मैं देख पा रही हूं कि स्कूल की बिल्डिंग है।